मेज नजर आ रही है कुर्सी नजर आ रही है।

ग्रिल दिख रही है खिड़कियाँ दिख रही है वाइट और ग्रीन ऑरेंज कलर के गुब्बा--

यह एक स्टार पेपर मिल्स लिमिटेड है।

कुर्सियां दिख रही है डस्टबिन दिख रहा है फोनपे दिख रहा है जीने दिखे रहा है।

यह एक दुकान है इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

यह एक बहुत ही सुंदर हॉल है।

और इस रूम में यह बेड रखा हुआ है।

जिसपे कुछ आदमी दिखाई दे रही हैं। टम्पू दिखाई दे रहा है। पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

घर दिख रहा है और यह पन्नी से बनाया गया घर है इसके अंदर फूलों के पेड़ है।

कैलेंडर दिख रहा है पंखा दिख रहा है।

कुछ आदमी के पैर दिख रहे हैं कट्टे दिख रहे हैं।